यह एक रोड का चित्र है जहां पे बहुत सारी ऑटो बस खड़े हैं।

ऊपर सीढ़ी पर पेट नॉट अलाउड लिखा हुआ है सामने दुकानदार बैठा हुआ है बहोत सारे लोग आ रहे हैं।

घास हरी कलर की है।

बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं पेड़ भी हैं।

फूल विक्रेता सफेद रंग के कमीज पहने हुए हैं सामने लाल कुर्सी है।

जहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

दीवालों पर बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

बाहर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमे ब्लू रंग का लिखा हुआ है एक कैची का लोगो बना हुआ है आदमी खड़ा है।

यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

एक सामने कुछ बिल्डिंग भी है सामने लोहा का कुछ पिलर भी है।

यहां एक तरफ सूरज चाट कॉर्नर और भी बहोत प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं।

सामने एक छोटा सा गेट लगा हुआ है।

बहोत सारे झरनों से पानी के फुहारे निकल रहे हैं।

यह एक मंदिर का चित्र है।

बहोत सारे झूमर लगे हुए हैं।

यह एक पार्किंग का चित्र है जहां पे बहोत अ ऑटो और गाड़ियां रखी हुई है।

बहुत सारी लाइटस तीन चार लाइटस लगे हुए हैं।

यह कोई पुस्तक दुकान का चित्र है।

पुस्तक दुकान का नाम वेदांता बुक वर्ल्ड है।

यह इंडियन पोस्ट का चित्र है।

इंडियन पोस्ट का पोस्टर लगा हुआ है सामने पेड़ है।

सामने दिवाले है सामने दूर- दूर पे बिल्डिंग बनी हुए जहां पे कुछ टावर लगे हुए मौसम बहोत ही सुहाना है।